ये फोटो किसी स्कूल की है जहाँ पर एक गैलरी दिख रही है खिड़किया लगी हुई है दीवारों पे काली कलर की दीवारों का कलर --

फोटो किसी जगह की है। यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं। कुर्सियाँ लगी हुई हैं। घास है हरी कलर की।

ये कपड़ो की शॉप है यहाँ लेडीज कपड़े की शॉप है| एक आदमी बैठा हुआ है जो कि मुस्लमान है।

एक आदमी है जो चेकिंग कर रा है और सेनेटाइस कर रा है। एक लेडीज है जिसने व्हाइट कपड़े पहने --